और इस मंदिर में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और उस मंदिर के ठीक सामने एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे प्रभु ईशु का आराधनालय दिखाई दे रहा है। सभी लोग किस पीछे दिवाल के साइड में प्रभु ईशु का क्रुश बना हुआ है।

और उस बुक को बेचने के लिए एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा --